सामने बहुत सारी टैक्सी दिखाई पड़ रही हैं जो की ब्लैक और येलो कलर में दिखाई पड़ रही हैं सभी टैक्सी लाइन पे खड़ी हुई हैं। नी--

के हाथ में एक बांस का डंडा दिया हुआ है जिससे नाव चलाई जाती है यहां से पानी ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे बहोत ज्यादा पानी भरा हुआ दिख रहा है।